और कागज के ट्रा कलर फुल टुकड़े रखे हुवे हैं।

फ्लोर में अंदर बहोत सारी लाइट्स लगी है। बाहर सीढ़ियां है पानी का फिल्टर रखा हुआ है बोर्ड रखा हुआ है।

बाइक खड़ी है ऑटो है दुकाने है पीछे बड़े बड़े पेड़ है।

कुछ गमछे शर्ट पे लगाए हुए हैं।

और दुकान में काउंटर लगे हुए हैं काउंटर के अंदर बहोत सारा सामान रखा हुआ है बॉक्स रखी हुई है।

बाहर भी बहोत सारे कार्टून के बॉक्स रखे हुए हैं।

और पीछे अ होल्डर लगा हुआ है।

सामने लोहे का गेट दिख रहा है गाड़ियां खड़ी है।